मैया जर्विसेस स्कूल के एंट्रेंस गेट की तस्वीर है जिसकी स्थापना उन्नीस दो मे हुई में।

इस तस्वीर में हमें एक रोड की सड़क की तस्वीर देखने को मिलती है जहां एक लड़का जा रहा होता है टेंपो वाला भी जा रहा है वही एक बाइक सवार भी --

रोड पर चला जा रहा है आगे हमें कुछ पैंट देखने को मिलते हैं एवं एक बिल्डिंग भी खड़ी होती है।